अब मैं आखिर के दो सामान्य एरर्सerrors पर हूँ जिसे मैंने शामिल किया है
और हम कठिन वाले से शुरू करेंगे
यह पीएचपीphp हेडरheader है और लोकेशनlocation पर जाने के लिए हम हेडरheaderफंक्शनfuntion का उपयोग कर रहे हैं
और यहाँ मुझे कुछ एचटीएमएल htmlकोड मिले हैं
यह एक हेडरheader टैगtag है मैं welcome लिख रहा हूँ
और हमारा goto वेरिएबल variable google dot com है
यदि goto मौजूद है जो कि इस समय है हम पेज url google dot com को अनुप्रेषित करने जा रहे हैं
अभी यह एक एररerror देगा
और एररerror है oh! um अच्छा इस वजह से o b start
चलिए इसको हटा देते हैं यह यहाँ नहीं होना चाहिए था यह कोड एररerrorको सही करने के लिए है
माफ़ कीजिये तो हम php header पर जाएँगे और हमें welcome! our html code मिल गया
फिर एक वार्निंग आती है cannot modify header information – headers already sent by और यही सब
अच्छा तो हमारे हेडर्स headers पहले से ही भेजे जा चुके हैं वैसे यह लाइन संख्या है
1 2 3 अतः यदि यह आपको phpheader dot php colon 3 प्रकार की एक एररerror देता है तो एररerror लाइन संख्या 3 पर हुई है
अतः यहाँ पर एरर है लाइन 3 पर ठीक है
और यह एररerror लाइन 9 द्वारा हुई है तो जब आप यहाँ जाते हैं हमारा हेडरheader फंक्शनfuntion है
अतः इसके होने का कारण यह है कि हम पहले से ही एचटीएमएल html कोड भेज रहे हैं
यदि हम इसे कमेन्ट कर के हटा रहे हैं और मेरे रिफ्रेशrefresh करते ही हम गूगल पर अनुप्रेषित हो जाएँगे
लेकिन बात यह है कि हम इस वेल्कमwelcome हेडरheader को यहाँ चाहते हैं
और वस्तुतः आप हेडर header फंक्शनfuntion के पहले एचटीएमएलhtml नहीं रख सकते हैंइस फंक्शनfunctionके लोकेशनlocationऔर दूसरी विशेषताओं पर जाने के लिए
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए
जैसा कि आपने एक मिनट पहले देखा था ob underscore start
यह क्या करता हैयह हमारे लिए इस समस्या को हल करता है
अतः मैं यहाँ phpheader पर आ सकता हूँ और यह कार्य कर रहा है यद्यपि यहाँ अभी भी मुझे मेरे हेडरheader से पहले मेरा एचटीएमएलhtml कोड एको हुआ है
अतः बिना इसके हमें एक एररpauseमिलती है और इस हेडरheaderके साथ यह ठीक कार्य करता है ठीक है
शुरुआती नियम के बावजूद भी यहाँ पर हेडर से पहले एचटीएमएलhtml आउटपुटoutput नहीं हो सकता
यह अब तक काफी समझ में आ गया होगा
अब अंतिम वाला बहुत ही सरल है
मुझे इसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी
यह idontexist dot php नामक एक फाइल को सम्मिलित करता है जो मौजूद नहीं है
तो चलिए एक नज़र डालते हैं उम कहाँ है ये missing dot php
ओह नहीं! यह नहीं open dot php
अच्छा! तो idontexist dot php सहित स्ट्रीम खोलने में विफल रहा; इस नाम की ऐसी कोई फाइल या डाइरेक्टरी यहाँ पर नहीं है
हमारी फाइल का नाम और डाइरेक्टरी लाइन 3 पर है
अतः चलिए लाइन 3 पर आते हैं
और इस फाइल में महत्वपूर्ण कोड की सिर्फ यही एक लाइन है
हमारे पास यहाँ पर एक और वार्निंग है समावेशन के लिए idontexist dot php को खोलने में असमर्थ और यही सब अतः हमें २ एरर्सerrors मिली हैं
यह काफी खराब लगता है जब आपके पास एक पेज हो जो एक हेडरheaderफाइल को सम्मिलित करता है
तब यह ज्यादा अच्छा नहीं दिखता मेरा मतलब संभवतः आप पहले किसी वेबसाइट में गये हो और आपने यह ऊपर देखा होगा
आपको आकर्षक करने की आवश्यकता है अतः आप सामने एक @ at चिह्न रख सकते हैं और रिफ्रेश करें
यह अब कोई भी एररerror नहीं दर्शाएगा
किन्तु इस तथ्य से छुटकारा नहीं मिलता कि फाइल मौजूद नहीं है
अतः फाइल जो की मौजूद नहीं है उसकी विषयवस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा
किन्तु हाँ उचित तरह से इसको देखें तो यह वाकई में काफी स्वव्याख्यात्मक है मैंने अभी सोचा कि मुझे यह वैसे भी समझाना चाहिए
अतः हमें एरर्सerrors का एक छोटासा समूह मिल गया है जिनसे हो सकता है कि जब आप पीएचपीphp में प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपका सामना हो
यदि वहाँ कुछ और एरर्सerrorsआपको मिल रही हैं तब कृपया मुझे सन्देश भेजें और मुझे सहायता करने में खुशी होगी
कृपया जानकारी के लिए आवेदन करिये देखने के लिए धन्यवाद मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ